इस फोटो में एक प्लेट है प्लेट में खाने का समान रखा है।

इस फोटो में अ दो कार दिख रही हैं।

और कुछ लड़के दिखाई दे रहे है।

और जो है पूरी बड़ी दुकान दिखाई दे रही है।

और इस फोटो में और तो कुछ नहीं दिख रहा कुछ पत्ते से दिख रहे हैं फर्श पे।

यहां पर काफी सारे गुब्बारे लगे है लाल और सफेद रंग के एक मंदिर दिखाई दे रहा जिसमें राधा कृष्ण की तस्वीर है।

चेयरस है नीले रंग की एक यहां पर कंप्युटर दिखाई दे रहा है जो की--

जोकि फोटो मे हमे दिख ही रहा है कुछ यहां पर पत्थर रंग बिरंगे है कुछ ऑरेंज है कुछ ग्रीन कलर के भी है कुछ पिक भी है।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

और चश्में लगा रखें हैं और जो फर्श है वो वहां पे बहोत सारे बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं पीछे से एक गुफा सी दिखाई मुझे दे रही है।

इस फोटो में सामने टेबल लगा है कुछ पीछे की तरफ में--

पेड़ पौधे मिट्टी दिखाई दे रही हैं दूर दूर तक--

ठीक एस और ये बैठे हुए दोनों जने--

सिक्स जीरो वन फोर नाइन वन दाल मखनी मिक्स वेज कढ़ाई पनीर मेथी रोटी मसाले नान--